सफ़ेद कलर के और दो चादर लगे हुए लगे हुए है चेक्स के है चौकड़ी कलर के--

पेपर पड़े है कुछ बाल्टियां पड़ी दिख रही है और पीछे कुछ और भी सामन पड़ा दिख रहे है।

और ऊपर कुछ लाइटे लगी हुई हैं और साथ में एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ हैं और साथ में इसके ऐसी भी दिख रहा हैं।

यह एक पुराने टाइप की बड़ी सी लम्बी सी टंकी बनी हुई है उसके ऊपर एक टावर बना हुआ है एक कथई कलर का दरवाजा दिया हुआ है।

और कुछ चने दिख रहे है | जो सबको बना के दे रहा है और कुछ उसके अंदर टमाटर हरा धनिया और प्याज के फोटो दिख रहे है।

ये एक सफ़ेद कलर कि बुल्ल्डिंग बनी हुई है सफ़ेद और लाल कलर कि है

टावर बना हुआ हैं वह भी सफ़ेद कलर का हैं टावर खिड़की टाइप का कुछ दिया हुआ हैं उसके ऊपर ब नीले कलर का आस----

उसके ऊपर एक बड़ी सारी सी चट्टानें दिख रही हे। जो चट्टान सुखी हुई हे और उसके पीछे कथई कलर की बड़ी सी चट्टानें दिख --